वह कुछ मशीनरियों के साथ काम कर रहे हैं।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

वहां के काउंटर पर एक कूलर रखा हुआ है।

इस चित्र में एक मंदिर नजर आ रहा है।

वही बीच में एक स्क्रीन दिख रहा है।

जिसे बहोत सुंदर सजाया गया है।